ये देखिए ये कोई यहां पे बिल्डिंग है और एक ये रेड कलर की बिल्डिंग भी यहां दिखाई दे रही है।

ये देखें यहां पर एक भैंस लगी हुई है और यहां पे कुछ बैठने के लिए भी रखी हुई है।

और लाइट दिखाई दे रही है और यहां पे पीछे मदरबोर्डस भी लगा हुआ है।

ये देखिए यहां पर एक बिल्डिंग है इसके ऊपर एक उर्दू में कुछ लिखा हुआ है।

और यहां अंदर कुछ एक शॉप है जिसके अंदर व्यक्ति खड़े खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

हर रूम के अंदर ए_सी का वो बाहर बॉक्स लगा है ए_सी वाला--

हरी भी है और ये देखिए यहां पे एक व्यक्ति है जोकि मछलियों की तरफ देख रहा है।

स्टोर यहां यहां नीचे एक व्यक्ति की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है।